इस तस्वीर में मुझे एक जंगल दिख रहा है मतलब खुला मैदान है यह एक जहाँ पर अ बिल्डिंगे बिल्डिंगे के बिल्डिंगों का निर्माण हो रहा है नई-नई बिल्डिंगे बन रहीं हैं।

इस तस्वीर में मुझे एक छोटा सा किला दिख रहा है आ इसके आसपास भी बहुत सुनसान जगह हैं और दूर-दूर तक छोटे-छोटे घर हैं जो किले हैं वह दिख रहें हैं।

और इसको फूल मालाओं से खूब अच्छी तरह से आ डेकरैट किया गया है इस रेस्टोरेंट को।

इस तस्वीर में मुझे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

जो जिम में यूज की जाती है।

इस तस्वीर मे मुझे एक बोर्ड दिख रहा है जो एक लोहे के गेट के ऊपर लगा हुआ है।

यहाँ पर मुझे जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है --